और हम इधर एक दीवार देख सकते हैं ।

और ऊपर हम नीले आसमान को देख सकते हैं।

दो मॉलस देख सकते है एक मॉल के ऊपर लिखा हुआ है मेगा शोप --

इस चित्र में हम देख सकते है कि एक बड़ा मैदान को देख सकते हैं ।

पूछे गए हैं और आस-पास--

क इधर एक बिल्डिंग है जो अ --

यहाँ बहुत सारी घास को देख सकते है जिसका रंग हरा है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि एक दुकान हैं ।

वाहन सफेद रंग का एक --